प्लाई को ठोक रहे हैं नीचे पेपर बिछाए हुए हैं दो मिस्त्री काम कर रहे हैं।

ब्लैक ब्राउन कलर में मॅट बिछाया गया है और काफी सारा काउंटर में समान भरे हुए हैं एक भी खाली नहीं है समान ज्यादा भरा है।

रखे गए हैं बड़ी वाली बोट है नदी के किनारे और काफी सार--

टेबल रखा गया है। टेबल पे चढ़ के ऊपर वाली दवाई--

बैठने का जगह है गेट टूटा हुआ है किनारे रखा गया है और उधर बाइक खड़ी है साइकिल अंदर लोग बैठे हैं खड़े हैं गेट निकाल के रख दिया गया है वैसे ओपेन कर दिया गया है खुला सा ग्रीन कलर का पर्दा लगाया गया है।

टायर चक्का वगैरा गाड़ियों में लगता है और ब्लैक कलर ब्लैक कलर में ऊपर-ऊपर से लटकाया गया है यहां से लोग खरीदते हैं टायर चक्का वगैरा।